और एक आदमी बैठा हुआ है जिसके कंधे पर अंगोछा सा पड़ा हुआ है।

और उनके साइड में पाइप से हैं व्हाइट कलर के पाइप से हैं खड़े हुए।

यहां पे तीन चार बहुत बड़े बड़े कुएँ से बने हुए हैं।

और आगे की तरफ भी एक ब्राउन कॉलर की कब्जे पड़ा हुआ है पड़ा हुआ है।

ट्रैकसूट पहना हुआ है एक मास्क लगा रखा है एक लड़का है ब्लू कलर की जैकेट पहने उस पर एलो कलर लाइन है।

और आगे उसके साइड में ऊपर एक कुम्भ सा बना हुआ है।

और मार्बल एक साइड में रखी हुई है उसके ऊपर वो है।

आइ स्टील की जो हो बंद होती है मार्बल छेका हुआ है।

और हाथ थोड़ा नीचे है हाथ में ग्लब्स पहने हुए हैं हाफ वाले।

और जो वजन कर रहा है एक्सरसाइज कर रहा है उसके साइड में लडका खड़ा हुआ है।

खिड़की है वह क्रीम कलर की पुताई हो रखी है और--

और एक लंबा सा प्लो है एक फ्लावर वाला प्लो रखा हुआ है।

ये एक मंदिर की फोटो है जिसमें लिखा हुआ श्री कृष्णा श्री राधे श्री कृष्णा।

कान्हा जी की मूर्ति है जिसमें और यह पूरा डेकोरेशन करा हुआ--

किसी चीज की जो खेत की फोटो है ऊपर सफेद आसमान है।

सिंपल सी इक रोड जा रही है जिसके चारों दोनों तरफ एकदम हरा भरा नहीं है सूखा सूखा सा पड़ा हुआ है।

ये कहीं पे टूट फूट हो रही है रोड है एवं एक क्रेन है।

गाड़ी का है बोनट खुला हुआ है जिसका नाम टी एस जीरो नाइन के टू जीरो थ्री फाइव ।

एक कुर्सी है जिस पर ये लोग तौलिया टॉवल पड़ी हुई है।

एक आदमी अंकल जी को समझ रहे हैं बहुत सारे लोग है वॉल फैन लगा हुआ है साइड में।

ये बच्चों की फोटो है इसमें तीन बच्चे हैं जिन्होंने वर्दी पहन रखी है इंडिया की और एक लड़की ने बटरफ्लाई पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है।

अंदर दो आदमी खड़े हुए हैं जिसने रेड कलर की शर्ट वाइट कलर की पैंट और एक ब्लैक ए अ और एक ऊपर कैप पहना हुआ है।

और वहां पे केक बहोत सारे केक हैं वहां पे दो आदमी बैठ कर बात कर रहे हैं फोटो कॉपी के पास।

कलरफुल से पौधे से लटके हुए हैं बाल्टी रखी हुई है।

पानी है पानी के जस्ट बगल में चीरा बना हुआ है रेड कलर के डंडे रखे हुए हैं।

में यहां चार प्लेट रखी हुई है दो प्लेट में नमकीन चावल है स्पून लगे हुएं हैं।

आगे मिट्टी की तरफ का है और पेट्रोल पंप की तरफ पका हुआ है पक्का बना हुआ है।

और एक दो तीन टैक्टर खड़े हुए हैं चार पांच टैक्टर खड़े हुए हैं। एक पेड़ है सफेद आसमान है।